बिल्डिंग में बहुत सारे सर्कल वाले बल्ब अंडरग्राउंड जल रहे हैं।

यह एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां दूर दूर तक पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इसके अंदर बहोत सारी व्हाइट कलर की बोरिया एक के ऊपर एक रखी हुई है।

दुकान में ऊपर करकट लगा हुआ है।

किले में बहोत दरार भी दिखाई दे रहे हैं।